अ विंडोज हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की--

एक लेडी है अपने बच्चे के साथ और दो जेंट्स हैं।

फिश मार्केट है। जहां पे एक टेबल पर बहोत सारी फिशेज रखी हुई है अलग अलग--

और उसमें एक हाथी बना हुआ हैं।

इसमें एक पोस्टर लगा हुआ है लड़की का ब्लैक कलर का टॉप है व्हाइट कलर की पेंट है।

फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं एक अ--

और उसके साथ में एक हैंगर टंगा हुआ है।

प्लेट सिल्वल सिल्वर कलर की है।